पार्क की हुई है एक व्हाइट कार दिखाइ दे रही है एक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है एक अं लेफ्ट साइड में --

बटे एक चार छे लग रहा है।

कचरा अलग अलग जगह से लाया जाता है।

यह एक सैलून की फोटो है।

और बाहर एक गाड़ी है उस तरफ भी एक बस खड़ी है पीले कलर की।

पर जो हैं वह बहोत ही अच्छी एक एकडेकोरेशन के स्टाइल में लाइट्स लगाई गई हैं।

यह एक ऑफिस की फोटो हैं जिसमें चार लोग जो हैं वो--

यह एक सब्जी की दुकान है जिसमें बहोत सारी सब्जियां--

जिसके अंदर बहुत सारे यह तो ब्लैंकेट हैं। ब्लैंकेट की शॉप है। ब्लैंकेट भरे हुए हैं।

यहां एक ढाबे की फोटो है। इस--

ढाबे में बाहर चेयर लगे हुईं हैं।

ऊपर लाइट्स लगी हैं और सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं।

आठ जो है वो सोफे लगे हुए हैं।

किसी चीफगेस्ट के बैठने के लिए।

यह एक घर के बाहर की फोटो है।